स्टेज पर बहोत सारे चेयर रखे हुए हैं।

इस जंगल में पानी का कलर वाइट कलर का है।

मकान है मकान का कलर व्हाइट कलर का है।

मकान का कलर ग्रीन और येलो कलर का है।

बड़े बड़े पेड़ भी हैं और कुछ मकाने भी हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान के अंदर बहुत सारे लोग हैं।

बिजली का खंभा भी है।

इस दृश्य में दो गाड़ी है ट्रैक्टर ।

किले के बगल में पेड़ है।

ग्राउंड में बहोत सारे लोग हैं इधर उधर चल रहे हैं।

यह एक गैरेज का दृश्य है इस दृश्य में बहुत सारे गाड़ियां पार्क की गई हैं।

टायर भी रखे हुए हैं नीचे गिट्टी भी है।

यह एक दुकान का आलमारी का दृश्य है।

कुछ बॉक्सेस भी बना हुआ है।

लाइट भी लगा हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर पोस्टर में ए_टी_एम लिखा हुआ है बिल्डिंग के बगल में एक बड़ा पेड़ भी है।

बेल का पेड़ है और भी बहुत सारे पेड़ है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।

यह एक कमरे का दृश्य है इस कमरे में एक सोफा है और टेबल भी है।

इस कमरे की दीवार का कलर व्हाइट है और सीलिंग पे वाइट बल्ब लगा हुआ है।

और कार्टून भी रखे हुए हैं।

इस दृश्य में पेड़ भी है और ईंटों का ढेर है और गिट्टी कभी ढेर है।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

रोड के किनारे बहुत सारे मकाने हैं।

मकान के बगल में एक लोहे का खंबा है जो बिजली का तार है।

यह एक कमरे का दृश्य है।

इस दुकान में बहोत सारे अलमारी पे क्रीम रखे हुए हैं।

इस कमरे में बहुत सारे एक्वेरियम रखे हुए हैं।

इस जिम की दीवार का कलर ग्रे कलर का है।

यह एक घर का दृश्य है घर के बगल में दो दुकान है।

रोड के दोनों साइड मकाने भी हैं।

रोड पे एक गाड़ी लगा हुआ है।

इस कमरे में बहोत सारे जूते रखे हुए हैं।

पर्दों के ऊपर बहोत सारे बलुन्स लगाए गए हैं और झूमर भी लगे हुए हैं।